सीढ़ी दिख रही है रेलिंग लगी हुई दिख रही हैं ।

ईंट रखे हुए है दो सामने गेट लगे हुए है मैरून कलर का --

ऊपर रेलिंग भी लगी हुई दिख रही हैं ।

इसमें बहोत सारा सामान रखा हुआ है काउंटर दिख रहा हैं ।

दो लड़के दिख रहे है सामने --